हरा-हरा मैदान है। गेट है। ग्रिल लगा हुआ है पी पक्का पक्‍की किया हुआ है।

हम्म लग रहा है ये बस स्‍टेण्‍ड है बोहोत सारे बस लगे हुए हैं।

यहॉं पर एक कार नज़र आ रहा है काला रंग का और बुल्लू कलर का तीन पिलर नज़र आ रहा है। ये कोई पार्किंग है अंडरग्राउंड पार्किंग है। यहॉं पे उजला कलर का फ्लोर है और ये घर --

बोहोत सारे आदमी यहाँ पे हैं। एक मै दो तीन महिला है पांच छे जेंस हैं।

ये एक बहुत बड़ा सा कोई पुल है। पुल पे लाइट लगा हुआ है। आगे आसमान में सूरज का रोशनी है और दो बाइक --